ये ए.टी.एम. की मशीन दिख रही है।

सफेद पीले लाल ऑरेंज कलर के फूलों से की लड़ी बनी हुई है।

दूर-दूर गाड़ी एक घर दिख रहा है खिड़कियाँ जिसमें तीन चार उसके नीचे दो खिड़कियाँ हैं। ऊपर बिल्डिंग है। ग्रिल दिख रही है।

इसमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

यह सीन तो देवरिया शहर का है। जिसकी का बाहरी दृश्य दिखाया गया है।

बहोत सारे परिवहन चल रहे हैं। टेम्पो दिखाई र दे रहा है बाइक है जिसपे दो लड़के बैठे हुए हैं।

आ र र इसके दोनों तरफ दो हैं जिसका आधा हिसा एम ए म मछली का दिखाया गया है।